एक देख रहा है और मोबाईल के साथ खड़े हैं।

ऊपर से आसमान दिख रहा है। साइड में एक पेड़ दिख रहा है। ऊपर से इलेक्ट्रिक तार चला आया है।

एक स्कूल का मठ दिख रहा है। मठ के --

एक टेबल पे --

साइड में कुछ एमेसीन पड़ा है।

एक मार्केट दिख रहा है। मार्के मार्केट के साइड में --

जीप गाड़ी दिख रहा है। जीप गाड़ी के उपर बोहोत सरे लोग बेठे हैं।

ऊपर बहोत सारे झूल रहा है।

सीढ़ी के नीचे में एक बच्चा लड़का खड़ा है।

इधर बहोत सारे लोग खड़े हैं।

ऊपर में एक स्टैंड दिख रहा है।

एक वाइट कलर का रूम दिख रहा है। रूम के ऊपर बोहोत सारे बैलून दिख रहा है। येलो --

बहोत सारे मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं। एक टोटो खड़ी है।

एक छोटा रूम दिख रहा है।

नीचे में एक चेयर दिख रहा है। साइड में --

एक लंबा सा रूम दिख रहा है। बोहोत सारा रेड कलर का लाइटिंग दिख रहा है।

एक बड़ा-सा सड़क दिख रहा है। ऊपर से --

लाइन चला गया है। साइड में बहोत सारे पेड़ दिख रहा हैं।

कुछ मार्केट दिख रहा है।

आई एम लिखा है। यू.पी.आई. लिखा है।

एक सरक दिख रहा है सरक के मंछरे एं-एं कुछ पेट दिख रहा है साइड में कुछ पिट दिख रहा है।